देख पा रहें हैं डम्मल --

जैसे कि अपन यहाँ पर देख पा रहें हैं कि यहाँ पर हमें यह एक फोटो दिया गया है।

ये करके हम देख पा रहे हैं कि बोहत सारी व्हाइट लाइटें जली हुई हैं और --

महल के आस-पास हमें दो बड़ी सी बिल्डिंग जैसी दिखा रही है |

फ़ोटो के अंदर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि फ़ोटो के अंदर हम देख पा रहे हैं कि बोहत सारी पेस्ट्री रखी हुई है और --

जिसपे से कि अपन यहाँ पर देख पा रहें हैं कि यह हमें एक फोटो दिख रहा है और फोटो के अंदर --

हैप्पी बर्थडे पचास टी एम लिखा हुआ है और यहाँ पर हम देख पा रहे है यहाँ पर हमें बहोत सारी जमीन --

जैसे की अपन यहाँ पर देख पा रहे है कि यहाँ पर हमें एक फोटो दिखाया जा रहा हैं और उस फोटो के अंदर देखा पा रहे कि हमें यहाँ पर --

जैसे की अपन यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमें एक फ़ोटो दिया गया है |